यहाँ पर हम देख सकते हैं की एक लड़का तबला बजा रहा है और यहाँ पर कोई समारोह हो रहा है यह समारोह में एक आदमी हारमोनियम भी बजा रहा है।

यहाँ पर हम देख रहे हैं की एक ग्राउंड है और ग्राउंड के अगल-बगल कुछ घर हैं यहाँ पर एक ग्राउंड के बगल में मंदिर भी है और यह छोटा-सा ग्राउंड एक मोहल्ले के बीच में है यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे आ कर शाम को खेलते हैं ।

हम यहाँ देख सकते है कि भगवान बुद्ध के आकृतियाँ बनी हुई है यहाँ पर लगातार एक श्रेणी में सब आकृतियाँ रखी गई है और इसको बहुत अच्छे से सजाया गया है।

ऑफिस में सभी लोग अंदर काम कर रहे है और ये बाहर का दृश्य है बाहर हमें एक कंप्यूटर दिख रहा है और जो ऑफिस है वो एक केबिन है वो केबिन के अंदर के बहोत सारे लोग हैं।